working with sheets पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे:
rows columns sheets को प्रविष्ट और डिलीट करना
sheets का नाम बदलना और
sheets को स्थानांतरित करना
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
अपनी personalfinancetracker ods file खोलें
यह file आपको इस tutorial पेज पर code files link में प्रदान की गई है कृपया file को डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
एक copy बनाएं और फिर अभ्यास के लिए इसका उपयोग करें
columns और rows अलगअलग और एक साथ प्रविष्ट किए जा सकते हैं
पहले हम सीखेंगे कि spreadsheet में नई row या नया column कैसे प्रविष्ट करें
हमारी personalfinancetracker ods file में cell c1 पर click करें
इस cell में cost लिखी है
अब standard toolbar में row icon पर click करें
rows से संबंधित कई विकल्प context menu में प्रदर्शित होते हैं
2 विशिष्ट विकल्पों पर insert rows above और insert rows below पर ध्यान दें
मैं insert rows above पर click करूंगी
cell c1 के ठीक ऊपर एक नई row प्रविष्ट हो गई है
standard toolbar में column icon पर click करें
columns से संबंधित कई विकल्प context menu में प्रदर्शित होते हैं
2 विशिष्ट विकल्पों insert columns before और insert columns पर ध्यान दें
मैं insert columns before विकल्प पर click करूंगी
cell c1 के बाईं ओर एक नया column प्रविष्ट हो गया है
इन बदलावों को अन्डू करें
rows और columns को menu bar में sheet menu पर क्लिक करके भी प्रविष्ट किया जा सकता है
नई row या column को प्रविष्ट करने का दूसरा तरीका है किसी भी cell पर rightquick करना
cell c1 पर rightclick करें और insert विकल्प पर click करें
insert cells dialog box खुलता है
यहां अपनी आवश्यकतानुसार चुनें और ok button पर click करें
अपनी समझ के लिए स्वतः इन विकल्पों का अन्वेषण करें
मैं इसे skip करूंगी और dialog box को बंद करने के लिए cancel button click करें
अब हम एक ही समय पर बहु rows और columns प्रविष्ट करना सीखेंगे
मानिए कि हम sn के पहले 4 columns प्रविष्ट करना चाहते हैं जो कि cell a1 है
अतः बाएं mouse button को क्लिक औऱ खींचकर cells a1 से a1 तक चुनें सभी 4 cells चयनित हो गई हैं
चयन पर कहीं भी rightclick करें और insert चुनें
insert cells dialog box में entire column विकल्प पर click करें
फिर निचले भाग पर ok button पर click करें
ध्यान दें कि serial number के पहले 4 columns प्रविष्ट हो गए हैं
अब अचयनित करने के लिए किसी भी random cell पर click करें
उसी प्रकार हम कई rows भी जोड़ सकते हैं इसे स्वयं समझें
अब हम सीखेंगे कि columns को अलगअलग और समूह में कैसे प्रविष्ट करें
दिखाए गए अनुसार column के ऊपर alphabet पर क्लिक करके किसी एक column को चुनें
अब standard toolbar में column icon पर click करें और फिर delete columns विकल्प पर click करें चयनित column डिलीट हो गया है
मानिए कि हम एक समय में एक से अधिक column डिलीट करना चाहते हैं
मेरे मामले में मैं इन 3 columns को डिलीट करना चाहता हूं जिन्हें हमने अभी प्रविष्ट किया
अतः यह दिखाए गए अनुसार columns के ऊपर alphabet पर क्लिक करके 3 columns चुनें
सभी 3 columns चयनित हो all हैं
standard toolbar में column icon और फिर delete columns विकल्प पर click करें
चयनित columns डिलीट हो गए हैं
उसी तरह हम कई rows भी डिलीट कर सकते हैं इसे स्वयं समझें
अब हम सीखेंगे कि calc में sheets प्रविष्ट और डिलीट कैसे करें
यहां calc में नई sheets प्रविष्ट करने के कई तरीके हैं
हम एकएक करके उनके बारे में सीखेंगे
निचली बाईं ओर पर हम sheet 1 named एक टैब देखते हैं
यहां उससे पहले कुछ icons स्थित हैं
जब हम plus icon पर click करते हैं तो sheet2 named sheet जुड़ जाती है
यह नई sheet वर्तमान वाली के दाईं ओर जुड़ जाती है
हम sheet tabs के आगे खाली भाग पर क्लिक करके भी sheets जोड़ सकते हैं
ऐसा करने के लिए insert sheet dialog box खुलता है
इस dialog box का उपयोग करके हम वर्तमान sheet के पहले या बाद में sheet जोड़ सकते हैं
हम एक समय में कितनी भी sheets जोड़ सकते हैं
position में मैं before the current sheet चुनूंगी और no of sheets में मैं 2 निर्दिष्ट करूंगी
और फिर निचले भाग पर ok button पर click करें
ध्यान दें कि sheet 3 और sheet 4 sheet 2 के आगे जुड़ गई हैं
sheets प्रविष्ट करने का अन्य तरीका है menu bar में sheet menu पर click करें फिर insert sheet पर click करें
ऐसा करने के लिए insert sheet dialog box खुलता है
मैं इसे skip करूंगी और नीचे cancel button पर click करें
अब सीखते हैं कि sheets कैसे डिलीट करें
sheets को अलगअलग या समूह में डिलीट कर सकते हैं
एकल sheet डिलीट करने के लिए उस sheet के टैब पर rightclick करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं
और फिर delete sheet विकल्प चुनें
confirmation dialog box खुलता है yes box पर क्लिक करें
चयनित sheet डिलीट हो गई है
एक समय में कई sheets कैसे डिलीट कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप मानिए हम sheet 2 और sheet 3 डिलीट करना चाहते हैं
पहले sheet 2 टैब पर click करें
फिर keyboard पर shift की पकड़कर sheet 3 टैब पर click करें
अब किसी भी एक टैब पर rightclick करें और delete sheet विकल्प पर click करें
confirmation dialog box खुलता है
sheet को डिलीट करने के लिए yes button पर click करें दोनों sheets डिलीट हो गई हैं
अब ctrl + z कीज़ दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
sheets default रूप से नामित होती हैं जैसे sheet 1 sheet 2 sheet 3 और इसीतरह
calc में अपनी आवश्यकतानुसार sheets के नाम को बदलने का प्रावधान है
उदाहरणस्वरू sheet 2 का नाम dump करें
sheet 2 टैब पर doubleक्लिक करके ऐसा करें
rename sheet dialog box खुलता है
यहां sheet 2 लिखा एक textbox है
इसे डिलीट करें और नए name के रूप में dump type करें
ok button पर click करें
sheet 2 टैब का नाम tab dump हो गया है
अब ctrl + z कीज़ को दबाकर इन बदलावों को अन्डू करें
हम sheet पर क्लिक करके और इच्छित स्थान पर इस खींच कर sheets को मैन्युअली पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं
keyboard पर ctrl + s कीज़ दबाकर file को सेव करें
अब ऊपरी दाएं कोने पर x icon पर क्लिक करके file को बंद करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा :
rows columns sheets को प्रविष्ट और डिलीट करना
sheets का नाम बदलना और sheets स्थानांतरित करना
नियतकार्य के रूप में spreadsheetpractice ods खोलें
heading sn के साथ column चुनें और डिलीट करें
name department और salary columns में संबंधित data प्रविष्ट करें
विवरण के लिए code files link का अनुकरण करें
departmentsheet के रूप में sheet का नाम बदलें
file को सेव और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया है यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद